जंगल में पत्तियाँ हरी दिख रही हैं। रोड पे कचरा दिख रहा व्हाइट कलर दिख रहा ब्लैक कलर दि --

देख रे --ये ऑटो दिख रहा है ऑटो में बोरियाँ दिख रही है गाड़ियाँ दिख रही है रोड दिख रहा है रोड पर गढ़े कचरे गाडी दिख रही है वो एक पे --

मशीन दिख रही है नीचे ना पानी की टंकी दिख रही है वाइट कलर की रस्सी टंगी हुई है सिर पर पगड़ी बंधी हुई है।

चाय की एक दुकान दिख रही है लाइट दिख रही है कप रखी हुए है टी_वी दिख रही है रुमाल दिख--

मकान दिख रहा है तीन ले चार लेडिस दिख रही हैं एक लेडिस का सिर नीचा है कोलर दिख रही है कपड़ा बंधा हुआ है गले में।